जो कि कुछ काले रंग की कुछ नीले रंग की कुछ लाल रंग की दिखाई पड़ती है।

मजदूर खड़े दिखाई दे रहे हैं।

यह एक जू का दृश्य दिखाई पड़ता है यहां पे कई सारी हिरण दिखाई दे रहे हैं।

बहुत बड़े बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

इस कमरे मे एक चेयर और एक कुर्सी दिखाई दे रहा है।

यहां पर कई सारे बल्ब भी जलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक होटल का दृश्य दिखाई पड़ता है।

नदी किनारे रेत दिखाई दे रहा है।

जहां की खेल का प्रतियोगिता चल रहा है।

यहां पर कई सारे बच्चे दिखाई पड़ते हैं।